यहाँ पर देख रहे है स्टेशन है स्टेशन में जो है।

ये स्टेशन की गुफा में बहुत सारे कार और लगे है। और अ कार ओ बो साइड साइड में जो एकदम लाइन बाय लाइन छोटा-छोटा बहुत सारे--

यह आदमी छोटा टोपी पहन के खड़े है देखिए यह हॉल में छोटा टोपी पहन के खड़े लग रहे है।

पार्क में एक दो आदमी भी बैठी हैं।

यहाँ सब अब जेंट्स पे है।

यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा गोदाम है। इसमें कॉपी किताब ये वो --